जहां तक मैं देख पा रही हूं दो औरतें नीचे बैठी हुई है।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

जहाँ पे एक साइकिल वाला अपनी साइकिल को लेके खड़े कुछ लोग आपस मे बात चीत भी कर रहे है।

एक पेड़ भी दिख रहा है कुछ चेयरस भी दिख रही हैं एक बैग दिख रहा है और कुछ झाड़ूयें भी रखी गई हैं।

ऊपर भी कुछ इंजीनियर के कम देख रहे हैं ।

टेबल पे एक डेस्कटॉप हैं अ एक--

लम्बी सी चेस रखी है ब्लैक कलर का --

तब मैं देख पा रही हु सफेद रंग की दीवार है जिसमे शाइनी पॉलिश लिखा गया है और --

लाइटिंग लगी हुई है बहुत अच्छी तरह से सजाया गया हैं।

जहाँ तक मैं देख पा री हु सुबह का समह है एक सफेद बिल्डिंग दिख रही है जिसपे--

सामने दो गाड़िया भी दिख नी दिख रही हैं अ--

आ इस मंदिर के इर्द गिर्द बहुत सारे पेड़ नज़र आ रहे है दुर --

साइड मे कुछ पेड़ पौधे भी नज़र आ रहे है सामने कुछ बच्चे ग्राउन्ड पे--

बिल्डिंग के पीछे बहुत सारे पेड़ पौधे नज़र आ रहे है बिल्डिंग के सामने संगम --